इस कार्यलय में को वाइट और रेड कलर में कलर में किया गया है और इसका एक दरावजा है और दो बड़ी खिडकी दिखाई दे रही है।

और यहा बिल्डिंग दो मंजिला बिल्डिंग है जो दिखने में बहुत बड़ी है।

यहा पर मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और घर के आस-पास नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और कुछ दुसरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

मुझे एक बहोत सारे ट्रक दिखाय दे रहे है।

और ये पार्क बहोत बड़ा हैं इसमें बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे है मुझे स्लाइडें दिखाई दे रही है मुझे --

यह एक होटल का सीन दिख रहा है मुझे आह जिसमें समाने रिसेप्सन है और उसके सामने सोफे रखे हुए हैं।

यह एक जिम सेंटर हैजिस में अलग-अलग तरह के सारे एक्ससाइज के स्टूलमेंट रखे हुए है।